और इसमें कई लोग कंप्यूटर चला रहे हैं खिड़कियां भी है फ्लोर भी है वी सुन्दर है।

उसमें एक बड़ा पत्थर है जिसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है।

टेबल भी है कुछ लड़ियो सा लटका हुआ है।